दो आदमी आ रहे है उनके पीछे जिप आ रही है वो सफ़ेद कलर की दिख रही है आदमियों ने सफ़ेद कलर की टी_शर्ट पहनी--

पहाड़ जैसा है पत्थर है जो काले कलर के दिख रही है और राइट साइड में पौधे हैं जो काले कलर के और हरे कलर के दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ बहुत सारे लोग है जो खेतो में धान लगा रहे है धा उनके आधे पैर पानी में है।

और सफेद कलर का पैजामा पहना हुआ है और ऊपर से काले कलर की जैकेट पहनी हैं एक आदमी ने लाल कलर की टी शर्ट और सफेद कलर की पैंट पहनी हुई हैं।

सिर पर पगड़ी बांध रखी है जो लाल कलर की दिख रही है राइट साइड कुछ बिल्डिंगे दिख रही है एक आद--

यहाँ खेत हैं उनननन में फसल उगी हुई जो हरी कलर की दिख रही हैं।

यहाँ दो डलिया रखी हुई है जो नीली कलर की दिख रही है उनमें मछली है जो काली कलर की--

यहाँ एक तालाब है जिसमें पानी भरा हुआ है और उसके राइट साइड बहुत सी घासे उगी हुई है।